बहुत सारे रैक बने हुए हैं जिनका रंग सदा नीला है।

सामने एक बहुत बड़ा फवारा लगा हुआ --

सामने की ओर हल्का सा पेड़ भी नजर आ रहा है।

अगल बगल में पौधे लगे हुए हैं हरी भरी घास से भी लग दिखाई पड़ रही हैं।

एक लाइट चमकती हुई दिख रही है।

बिल्डिंगो का रंग अलग अलग है बिल्डिंगों में ऐ सी लगी हुई है।

किसी जगह का चित्र है जहां बहोत सारे घर नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर एक पहाड़ भी है अगल बगल में बहुत सारे पेड़ है।

अगल बगल में बहोत सारे घर भी हैं।

ऊपर की ओर सजावट के लिए माला लगा हुआ है।

दो गाड़ियां भी नजर आ रही है जिनका रंग सादे रंग का है एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

कुछ लोग वहां जिम कर रहे हैं आसपास में बहुत सारे पौधे और घास है।

यह एक दुकान का चित्र सामने एक आदमी खड़ा है जोकि सादे रंग का टोपी लगाया हुआ है।

वाल में एक स्विच है जिसमें काला कलर का का प्लग लगा हुआ है।

सामने की ओर एक बोर्ड पर रानी हॉस्पिटल लिखा हुआ है।

दुकान में भिन्न प्रकार की सामानें बिकने के लिए है।

उसका रंग सादे और हरे रंग का है।

ओटो हैंडल में एक आदमी अपना हाथ रखा हुआ है।

यह एक जगह का चित्र है सामने एक आदमी एक काले कलर की कुर्सी पर बैठा हुआ है।

एक जगह का चित्र है सामने एक काले कलर की गेट लगी हुई है ।

सामने तीन चार बिल्डिंगे भी नजर पड़ रही है।

सामने खंबा से बहुत सारी तारे जा रही हैं।

एक रेस्टोरेंट का चित्र है सामने दो लोग मोबाइल देख रहे हैं ।